स्कूल का रस्ता है वहा बहोत सारे झाड़ आये एक स्कूल है अ--

माता जी की फोटो है लगाई हुई फैन चालू है लाईटा --

स्कूटी टी गाड़ियाँ वो उसका शो उसका छोटा सा एक गरेगे हैं वहाँ गाड़ियाँ धोते भी स्कोटिया हैं।

कार्टून के जैसे पोस्टर है फुग्गे लगाए हुए है ग्रीन कलर का पर्दा है दो आदमी बाजु से खड़े है और लाइट ऑन पीछे रूम है।

एक बहुत बड़ा सा शादी का हॉल हैं वहां झूमर हैं और कुर्सियां हैं लाइट ऑन हैं और नीली कलर की लाइट हैं ऊपर से न क्या--

एक होटल है चंडीगढ़ स चंडीगढ़ नाम है दो आदमी है एक आदमी वॉचमैन है एक चोटी सी कार है ।

खड़कियाँ है रूम की और एक सीड़ी है जाने के लिए ऊपर अंदर एक आदमी है शोपीस का नकली झाड़ है ।

सबने विथाउट रंगीत कपडे पहने हुए है और बहार वाइट कलर के दो परदे लगे हुए है टीचर्स पीछे से तीन सीढिया है ऊपर चढ़ने के लिए --

और ड्राइंग बुक एक आदमी खड़ा है और दो बड़े से उसमें बुक्स है उम्म--

बड़े बड़े से पत्थर है एक दम बड़े से और--

नई क्या झाड़ा है जंगली झाड़ा काटे के झाड़ा हैं इसको झाड़ सूखा हुआ है इसके ऊपर चिमनी बैठी हुई है।

एक ये एयरटेल की बहुत बड़ी कंपनी है और रस्ते पे रिक्शा जा रही है एक आदमी बहार खड़ा है लाल शर्ट में और स्कूटी यह पर लगे हुए है।

रहे है और उसके हाथ में कैंची है वो कटिंग करा है नीचे सारे बाला गिरे हुए है नीला कलर का --

एक पीछे साइड होटल है छोटा सा पार्क है पार्क के उपर--

तार के अंदर एक खंभा है ये शो पीस के बड़े बड़े झाड़ा है और कांच का जैसा होटल है बाहर से कांच लगी हुई है होटल म--

एक छोटी सी किराने की दुकान है वहा कुरकुरे है।

क्या क्या रेट है बाहर रखे हुए एक बाजू में और शटर डाउन है और बाजू में भी एक किराने की दुकान है।

एक और पीछे बिल्डिंग है यहाँ पर मंडप लगाया हुआ है ।

तीन कलर के काँचा है रोशनी जा रही है छोटा सा फैन है और टेबल है और लाइट ऑन है ।

खड़ा है एक आदमी नीचे बैठ है बड़े बड़े कारा है और अ अंदर जाने के रास्ते भी कु --

एक बहोत बड़ी पार्किंग है और पार्किंग के बहार रास्ता है वाइट कार जा रही है पार्किंग के अंदर एक दो साइकिल लगा है बैठने के वास्ते टेबल है।

एक मच्छी की दुकान है वहाँ बहुत सारे मच्छी है बड़ी मच्छी छोटी मच्छी एक कटिंग करी एक काटी हुई मच्छी है झींगे है।

और एक आदमी मच्छी कट कर रहे हैं वह बाजू में मच्छी बाजार है और अह उसके बाजू साइड एक छोटा सा लड़का नीचे बैठे हुआ है एक आदमी उसको पूछ रहा है।

एक हाथी है उसके अंदर हाथ के हाथ में फुल पकड़वा है और--

एक अ ममम मिठाई की बहुत बड़ी सी दुकान है और उस पे ऊपर लिखा है पीपल टू में --

तीन से चार मझली लाइट ऑन है और गोल गोल सीढिया है छोटा सा फैन भी लगाया हुआ है रंगीत कलर की लाइट है चॉकलेटी कलर की दिवाल है।

पास ही यहां पर व्हाइट कलर के पूरी डिजाइन से भरे हुए सीन है एकदम डिजाइन विजाइन करे --

पैंपर्स सब ल रगे हुए है और रुमाल है पत्रे ऊपर पत्रा डाला हुआ है ।

बैठे कुर्सी पे ऊपर स्टेज पे भी आदमी औरतों कुछ जा रहे कुछ खड़े है एक जन के पास माइक है और एक आदमी देख रहा है नी--

एक बहुत बड़ा जॉगिंग पार्क है वहाँ शोपीस के झाड है एक और सारे बहुत सारे शोपीस झाड है नकली झाड़ा है।

घर है और बिल्डिंग्स है आने जाने के लिए रस्ता है।

धूप बहुत है और वो साइकिल रुकी हुई है आदमी केले के पास कुछ तो कर रहा है।

एक सेल लगी हुई है नाईट पैंटा की हाफ पैन्ट की फैन है और लाइट ऑन है और--